मुझे यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रहा है शॉप जिसमें दो ए.सी. भी लगे हुए हैं और इसपे लिखा है बी ओ एल बॉल।

मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो आसमानी कलर का टी-शर्ट पेहना हुआ है वो बैठा हुआ है रेड कलर की चप्पल पेहना हुआ --

बगल में सफ़ेद कलर का सामियाना अ पर्दा लगा हुआ है और उसके पीछे की तरफ मुझे पेड़ दिख --

और वो क्रीम कलर से पेंट है और यहाँ पर बहोत सारी भीड़ इकट्ठे है जिसमे कुछ लड़के-लड़ --

अ प्रणाम नाम का अ चित्र लगा हुआ है लिख के और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ --

और एक स्टूडेंट के उस पे कुछ नंबर्स लखे लिखे हुए हैं।

उसके आस-पास हरी-हरी घासें दिखाई दे रहीं हैं और बहोत सारे पेड़ है। यहाँ पर एक डंडा भी लगा हुआ है और एक लकड़ी --

नेटवर्क पा अ टॉवर और उसके सेण्टर में उसके बगल में एक सीढ़ी दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ जाने वाली।